ये एक घर है। यहां पर बहुत सारी लाइटिंगस लगी हुई है। बहुत ही डीसेंट यहां पर उसका लुक है और कुछ सीढ़ियां भी है यहां पर --

और एक आदमी बाहर गेट के खड़ा हुआ है।

नमकीन रखे हुए हैं गुटके रखे हुए हैं और यहां पर रात का समय है।

छोटे छोटे खिड़की लगाये हुए है दो बड़े बड़े डोर्स है इस पर--

और इसका जो गेट है वो सिल्वर कलर का है स्टील से बना हुआ और जो एंट्रेंस है वह काले कलर का है।

ये गार्डन है जिसमें छोटी-छोटी घांस उगी हुई है और बहुत सारी धूप है यहां पर।

सेफ्टी मास्क पहने हुए है और सेफ्टी ड्रेस पहने हुए है।